काउंटर के आगे कुर्सियाँ रखी हुई है और पुस्तक गिरने पर पर यहाँ और भी चीजें है काउंटर पर रखी हुई है नीचे का का फर्श दिखाई दे रहा है जोकि टाइल्स का बना हुआ हैं।

इनी पिले रंग की नेम प्लेट लगी हुई है जिस पे कुछ लिखा हुआ है सामने एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने चस्मा लगा रखा है पीछे हरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे है ऊपर तार दिखाई दे रहे है नीचे फर्श दिखाई दे रहा है।

दूसरी तरफ देखने पर एक अच्छा बना हुआ है जिस पर हाथी दिखाई दे रहे है नीचे संगमरमर का फर्श दिखाई दे रहा है आस-पास कई सारे लोग दिखाई दे रहे है पीछे ग्रे जालियां दिखाई दे रही--

यह स्टेचू एक पत्थर पर लगा हुआ हरी हरी घास दिखाई दे रही है आस पास बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

--ह एक मंदिर का दृश्य है जिस में एक प्रतिमा रखी है प्रतिमा के चारों तरफ रंग-बिरंगे के गुब्बारे लगे है लाइटें दिखाई दे रही है सफ़ेद रंग की दिवार दिखाई दे रही है।

सफेद रंग की शिला दिखाई दे रही है उसका गुंबद दिखाई दे रहा है इस पर आकृति बनी हुई है यह एक व्हाइट कलर की दीवार पर बनी हुई हैं।

यहाँ पर एक टी शर्ट दिखाई दे रहा है टी शर्ट के नीचे एक बोर्ड लगा है जो की नीले रंग की है जिस पर पीले रंग से कुछ लिखा हुआ है सामने एक दीवार दिखाई दे रही है जो की गुलाबी रंग की है और सामने की तरफ--

में एक और दुकान दिखाई दे रही है जिसपे समान लटका हुआ है और एक बोर्ड लटका हुआ है जो कि सफेद रंग का है जिसमें कुछ लिखा हुआ है एक आदमी दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ पर एक पत्थर दिखाई दे रहा है पत्थर पर एक मूर्ति बनी हुई है ये हरे रंग की मूर्ति है इसके बाद पछला दिखाई दे रही हैपीछे वहाँ पर हरी-हरी घास दिखाई दे रही है गड़ी नाड़े दिखाई दे रही है इस शिला पर कुछ लिखा हुआ है।